यहां पे एक लड़की नाचते हुए दिखाई दे रही हैं जिसने जो कि बहुत ही खुबसूरत दिख रही हैं।

यह तस्वीर में मुझे एक मंडप दिखाई दे रहा है मंडप में मुझे कुछ धार्मिक लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर लोग पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है यहां पर शादी चल रही है।

सामने की तरफ कुछ फूल पौधे दिखाई दे रहे फूलो का कलर मुझे सफ़द ऑरेंज लाल दिखाई दे रहा है और सामने की तरफ पर्दे लगे हुए --

यह तस्वीर में मुझे एक वहाँ तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर मुझे कुछ लेडिस दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर एक आदमी ब्लैक कलर की शर्ट पेहना हुआ है जो की फोटो क्लिक करवा रहा है।

पीछे की तरफ मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है आसमान में बादल दिखाई नहीं दे रहे है।

और बस में इस कदर की भीड़ है कि ऊपर और नीचे की ओर दोनों जगह सीट भरी हुई हैं लोग इतने बेतुत है जो कि बस के ऊपर चढ़ कर बैठ रहे है।

पीछे की तरफ सजावट बहुत ही अच्छी और शानदार दिखाई दे रही है यहां पर पंखा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं यहां पर कुछ चेयर भी रखी हुई है और यहां पे फादर भी --

पीछे की तरफ रोशनी आते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पर मुझे जमीन के ऊपर कुछ पत्ती पड़ी हुई दिखाई दे रही --